इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

जिसके किनारे हमें काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

यह होटल का रिसेप्शन है जिसको लकड़ी का बनाया गया है।

टॉकीज के बाहर फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हमें छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

तालाब के किनारे एक मगरमच्छ धूप सेक रहा है यहां हमें बड़ी-बड़ी सूखी घास दिखाई दे रही है।

और एक इमारत दिख रही है यहां पर कुछ लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है एक दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें कुर्सियां और लोग नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है एक दुकान--

कुछ सूखी घास और सूखी पत्तियां भी दिख रही हैं।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है यहां पर हमें लाल रंग के गमले नजर आ रहे हैं।

सामने हमें जोहर सवा एक जुमा सवा एक लिखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक खेत दिखाई दे रहा है कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं एक ऑटो नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक दुख घर जिसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक कॉलोनी नजर आ रही है।

जो कि जूरली की दुकान है यहां पर हमें काफ़ी सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं और टाइल्स का रंग बिलकुल सफ़ेद नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक शोरूम दिखाई दे रहा है।